पता है ये फोटो एक पहाड़ का है जिसके बीच में य ये दोनों फोटो खींचा रहे हैं।

जिससे जिससे दोनों के लिए अलग अलग कॉफ़ी आर्डर की गई है तथा यह कपल भी हो --

तथा मजदूर मजदूर सफ़ेद थैली में कुछ भर रहे हैं तथा ट्रक खड़ा है।

तथा बाकी चार युवकों तथा चार डॉक्टरों ने --

इस फोटो में एक सुंदर-सी बिल्डिंग नजर आ रही है।